शॉप नजर आ रही है यहां पर बहोत सारी पानी वाली बड़ी बोतल हैं।

बड़ा ग्राउंड है यहां पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं यहां पर बहोत सारी हरियाली पेड़ पौधे हैं यहां पर--

स्कूल जैसा नजर आ रहा है।

इस इमेज में हमें एक बहोत बड़ी पा जु नज़र आ रही है।

यहां पर बहोत सारे पत्थर फ्री पड़े हैं।

इस व्यक्ति ने रेड कलर का कोट पहने हुआ है यहां पर--

व्हाईट कलर किया हुआ है यहां पर ब्लैक कलर की स्लैप है।

ये बहोत बड़ा शो रूम नज़र आ रहा हैं यहां पर बोहोत सारी सेल लगी हुई हैं यहां पर बहोत सारे व्यक्ति आए है। यहां पर --

यहां पर बहोत सारे श्रद्धालु आए है यह एक बहोत बड़ी नदी है यहां पर बहोत सारा पानी है।

बहोत बड़ी मशीनें नजर आ रही है।